इस फोटो मे मुझे रेल्वे प्लेटफारम दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे बहोत सारे ईंटें दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे मोबाइल टॉवर दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे टी_वी दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे एक बड़ा स्टार दिखाई--

इस फोटो में मुझे नल दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे सब्जी मंडी दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे एक बड़ा होल दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे घल दिखाई दे लहा है।

एक लोहे की बाउंड्री दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे मूर्ति दिखाई दे रही है।